काफी सारे लोग बजरी डाल रहे हैं।

उसके पीछे एक चेयर और है और दो तीन खूबसूरत छाते लगे हुए हैं।

और उनके पीछे छोटे छोटे घर हैं।

और मेज है मेज पर कुछ रखा हुआ है और दोनों तरफ खिड़कियां हैं।

और एक बोर्ड नीचे रखा हुआ है।

और सामने तीन डब्बे हैं बड़े बड़े।